इसके आगे की ओर भी एक अलमारी है जिसके आगे सफेद कलर की पर्चियां चिपकाई गई हैं।

पीछे की ओर हथौड़ी पेचकस वगैरा रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ती बैठकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

व्यक्ति बैठ के अपनी दाढ़ी मूछ बनवता हुआ दिखाई दे रहे है।

सामने की ओर शीशा लगा हुआ है और एक टी_वी भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

व मंदिर का एक कमरा बना हुआ है छोटा सा--

इसमें बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। आदमी औरतें बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा सा खाली ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड में तीन चार लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

में रेत पड़ी हुई भी दिखाई दे रही है।

और बहोत सारी रिक्शा वाले भी दिख रहे हैं जो कि अपनी अपनी सवारियां बैठ बैठालते हुए दिख रहे हैं।

बहुत बड़े नंदी महाराज उनके सामने शिव जी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

साइड में गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान और लक्ष्मी माता भी बैठी हुई दिखाई दे रही है।

यहां एक फैक्ट्री के अंदर की तस्वीर दिखाई दे रही है।

अलीशान रिपेरिंग शॉप एवंम गैस वेल्डिंग लिखा हुआ है।

जहां एक खुला सा मैदान दिख रहा है जिसमें घास भी दिख रही है हरी हरी--

बहुत सारे लोग पहाड़ी गानों में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

चारों ओर की ओर पहाड़ टाइप की पत्थरों के बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

जैसे कि शेरावाली माता और गणेश जी सरस्वती माता और भी बोहोत सारे भगवान हैं।

ऊपर की ओर एक लकड़ी का पुल टाइप का बना हुआ है।

इसमें एक सोफा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।